एक दरी बिछी है जिस पर तीन बोटल रखी हुई दिखाई--

दो लोग आते-जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा खेल का मैदान दिखाई--

और पेड़ भी लगे हैं और खुला आसमान दिखाई --

इस चित्र में एक स्टेज के ऊपर--

बोर्ड भी लगे हुए दिखाई--

पोशाक पहने कुछ जाती हुई दिखाई--

यहाँ पटरियां भी बनी हुई हैं और--

और पेड़ भी लगे हुए--

तीन डमियाँ खड़ी हुई--

इस चित्र मे एक बड़ी सी रैक लगी हुई--

मैदान बड़े-छोटे घर और बिल्डिगें --

कुछ तार और एक खंबा भी लगा है और--

पेड़ जमीन में लगे हुए दिखाई--

सीमेंट के बहुत सारे गमले--

बेंचों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ बहुत सारी लाइटें और--

जिम के अंदर का चित्र है जहां पर--